एक के हाथ में फोन है और ऑफिस के अंदर सामने साइकिलें लगी हुई है उसके सामने उसके पोस्टर भी लगे हुए हैं और नीचे --

यहां पर एक बहोत बड़ा हॉल है हॉल के अंदर कुछ कुर्सियों के बंडल रखे हुए हैं अलग-अलग रखे हुए हैं सामने टैबले भी रखी हुई है टेबलों के पीछे --

बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं चमकदार लाइटें हैं और कुछ स्टीकर ऐसे सजा रखा है बहोत ही शानदार मोर --

के पथरीला बना हुआ है पथरील से उसके अंदर पानी बहुत शानदार है और उसके पास में एक पेड़ भी गहरा पेड़ खड़ा हुआ है।

यहां पर कुछ मशीने है जो बहोत ही--

छोटा सा ड्रम भी पढ़ा है नीचे उसके पास वेनि सेनी लगी हुई है।

यहां पर एक बिल्डिंग के अंदर बहुत शानदार कमरा है कमरे के अंदर कुछ पंखे लगे हुए हैं कुछ दो तीन लाइटें लगे हुए हैं कुछ --

उसके आगे गाड़ी खड़े हैं टेंपो भी खड़े हैं कुछ लोग भी खड़े हुए हैं कुछ बाईकें भी खड़ी है।

ये बहोत ही शानदार प्लेटफार्म नागौर वाला प्लेटफार्म है इस पे दोनों प्लेटफार्म एक और दो पे ट्रेने खड़ी है और --

यहां पे बहुत बड़ी शानदार ऑफिस है। ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट रखे हुए हैं ऊपर--

की दुकान सामने बाइक खड़ी हुई है पास में कुलर भी रखा हुआ है एक टेबल रखे हुए हैं बाइक तैयार करने की दुकान है।

प्लेटफार्म पर एक ट्रेन खड़ी हुई है उसमें कुछ पैसेंजर चढ़ रहे हैं कुछ बाहर खड़े हुए हैं और उसके --

मंदिर का पोंछा भी ऊंचा टंगा रखा है और मंदिर की थोड़ी सी सजावट अलग ढंग से कर रखी --

आगे झुक के पढ़ाई कर रहे हैं कुछ पीछे झुक के पढ़ाई कर रहे हैं और एक उधर इधर टेबल लगी हुई है पानी --

बैंक भी है और बैंक के ऊपर बहोत बड़ी एक बेल रखी है बेल लग रखी है ऊंची बहोत और गहरी भी है उस साइड से एक और --

पार्क टाइप है और उसके पास में एक बहोत बड़ी गाड़ी रुकी है गाड़ी के--